एक अंकल जी खड़े हैं जिन्होंने व्हाइट शर्ट पहना है ब्लैक पैंट पहनी है।

एक ने ब्लैक पैंट और वाइट पैंट पहन रखी है और ऊपर कुछ लकड़ी है।

सब्जी रखी है फूल रखे हैं।

यहां पर मैगी है प्लेट के अंदर प्लेट व्हाइट कलर की है यहां पर एक जग है एक ग्लास है।

और पेड़ पौधे हैं और एक आदमी जा रहा है जिसने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लू कलर की पैंट पहनी है और उधर कुछ बसें भी खड़ी है।